इसमें मुझे चश्मे की दुकान दिख रही है।

इसमें मुझे झरना बहेता दिख रहा है।

इसमें मुझे बिस्तर लगा दिख रहा है।

इसमें मुझे पानी की बड़ी टंकी दिख रही है।

इसमें मुझे शंकर जी की मूर्ति दिख रही है।

इसमें मुझे एक पेड़ दिख रहा हैं।

इसमें मुझे डॉक्टर की क्लीनिक दिख रही है।

इसमें मुझे खाली बॉक्स भी दिख रहे हैं।

इसमें मुझे एक लड़का खड़ा दिख रहा है।

इसमें मुझे बाहर गमले रखे दिख रहे हैं।

इसमें मुझे मंदिर के बाहर गमले दिख रहे हैं।

टंगी दिख रही है इसमें मुझे शो केश दिख रहा है।

इसमें मुझे ऑफिस रूम दिख रहा है।

चर्च रूम दिख रहा है इसमें मुझे बाहर--

फूल लटके दिख रहे हैं इसमें मुझे चादरें दिख रही हैं।